यहां पर ये मस्जिद के अंदर का है जहां पर काफी रूम्स दिख रहे है लेकिन उनकी डोर क्लोज़ है और यह माइक भी है और --)>

और यहां पर पिलर लगे हुए है और ये पूरी व्हाइट है उसमे ग्रीन काम हुआ है यह सामने पंखा भी है और यहां पूरे मे टाइल्स और मार्बल लगे है।

और यहां अंदर की तरफ ही मेडिकल शॉप बनी है और ये एक उसमें मेडिसिंस रखी हुई है।

और यहाँ पर काफी बड़े हरे-भरे पत्ते लगे हैं और यहाँ पर दिन का टाइम है और यहाँ ब्लैक शटर भी लगा हुआ है।

और यह बाहर की तरफ कुछ पोस्ट भी लगे है और यहाँ पर कुछ प्लग भी बने हुए है और यहाँ काफी सन्नाटा है।